मंदिर में इसका जो कलरिंग किया गया है कितना अच्छा कलर दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का एक इक्विपमेंट है।

की किसी मैले का या किसी पूजन का विसर्जन का ये समय है।

अ कुछ बड़ा-बड़ा पेड़ हैं कुछ छोटा-छोटा पेड़ हैं ग्राउंड पे देखिए ग्रीन कलर का कुछ जगह घास भी हैं कुछ जगह घास नहीं हैं इसमें टेबल भी रखा गया हैं बैठने के लिए जिसमें दो लेडीज भी बैठे दिखाई दे रही हैं बहुत दूर से --

ये भी एक बगीचा ही है जिसमें बच्चों को एक्सरसाइज और खेलने के लिए बनाया गया है नेट का ये नेट से बच्चे अब वॉलीबॉल खेल सकते हैं। बच्चों को जिम करने के लिए बनाया गया है। नीचे छोटे छोटे घास दिखाई दे रहा है जमीन में।

कितना बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है इसमें बड़े-बड़े घांस भी है इसमें बहोत सारा बच्चे पब्लिक दिखाए दे रहे हैं जो शाम के समय में खेल रहे हैं इसके बगल में देखिए सूर्योदय कितना अच्छा अ सूर्यास्त कितना अच्छा दिखाई दे रहा है इसके चारो तरफ से ग्राउंड कितना अच्छा बना हुआ है बाउंड्री कितना अच्छा हुई है चारो तरफ सब बिल्डिंगे हैं बड़े-बड़े बिल्डिंगे है इसमें कितना अच्छा सीन दिख रहा है अभी।

बच्चों का क्लास-रूम हैं जिसमें ब्लैक बोर्ड भी हैं व्हाइट बोर्ड भी हैं लोट लाइट भी लगा हुआ हैं दरवाज़े भी है खिड़की भी है इसमें देखिये बहुत सारे पन्द्र बीस बेंच रखे हुए हैं ग्रीन कलर का बेंच रखा हुआ है।

बहुत सारे यहाँ पर आइटम रखी हुए हैं बेचने के लिए लगता है कोई कितना अच्छा है।

दिखाई दे रहा है यहाँ पे जन सेवा केंद्र है यहाँ पे देखिए एक बन्दे कंप्यूटर पे काम कर रहे है उसके सामने कस्टमर बैठा हुआ है यहाँ पे बैंक खाता खुलता है पैसे जमा होता है निकासी होता है किसी बैंक खाते में आधार जमा में लेन-देन लेन-देन कर सकते है इस प्रकार का बैनर लगा के रखा है बैंक ऑफ़ बड़ौदा है।